और देखने मै यह बहुत स्वादिस्ट लग रहा है। --

इस दृश्य मे हम देख रहे है एक बड़ा-सा कमरा कमरे के ऊपरी भाग मे बहुत ही सुन्दर सजावट की गयी है।

इस दिरीश मै एक सड़क है सड़क पर एक नया रिक्शा खड़ा हुआ है। --

दृश्य मे एक बड़ा-सा मैदान देख रहे है मैदान मे बहुत सारे हरे-हरे वृक्ष नज़र आ रहे है।

इसमें हमे एक बड़ी-सी नहर देख रहे है नहर के ऊपर एक चौड़ा पुल बनाया गया है ] पुल के। --

इसमें बिजली के खम्भा और तार भी दिखाई दे रहे है।

पार्क में एक कछुए की एक मुर्ति बनाई गई है उसके ऊपर एक मेंढक भी दिखाई दे रहा है।

खिड़कियां बनी हुई है और बाजा भी बना हुआ है।

निचे दो खम्बो के बिच रास्ता बनाया गया है और अगल - बगल पौधे और वृक्ष भी दिखाई दे रहै है।

इस दृश्य में हम देख रहे है दो बड़े - बड़े पत्थर पत्थरों के निचे छोटे - छोटे पत्थर भी लगाए गए है।

इसके बगल मै एक गाड़ी है और विरिक्च नजर आ रहा है।

सामने सड़क है और सड़क के दूसरी तरफ हरे - हरे वृक्ष दिखाई दे रहे है कुछ वृक्ष और पौधे पीछे भी दिखाई दे रहे है।